यह चित्र किसी मंदिर का जोकि सामने बहुत बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

चित्र किसी पारक का हैं जो की सोसाइटी के बाहर बना हुआ है। एक पारक दिखाई दे रहा हैं।

चितर (चित्र) किसी बाल काटने वाले के दुकान का है क्युकी (क्योंकि) सामने कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

और सामने उनके शीशे लगे हुए हैं और बाल काटने के कुछ ओजार और कुछ वस्तुए रखी हुई दिखाई दे रही हैं।